उसने ब्लू रंग की जैकेट पहनी हुई है। सफ़ेद रंग की कमीज और काली रंग पैंट ।

और एक इंसान है जो कि उसके आगे खड़ा हुआ है। कूलर लगा हुआ है और एक इंसान सेल्फी ले रहा है।